यह एक छोटी सी पुल पर नदी के ऊपर पुल बना गया हुआ है रोड काफी दूर तक गई हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट है यह रेस्टोरेंट काफी अच्छी है यह रेस्टोरेंट में काफी अच्छे पंडाल लगे हुए हैं पेड़-पौधे यह रेस्टोरेंट में काफी अच्छी खाना बनते हैं और यहां पर खेलने के लिए भी सामान रेलगाड़ी बनाए हुए हैं।